सामने एक रोड दिख रही है जहां से कुछ ऑटो और कार वगैरा आते जाते दिखाई दे रही हैं।

सामने एक शॉप दिख रही है कपड़ों की जो सामने में कुछ लेडिस शाॅप हो और कुछ जेंट्स शाॅप भी दिख रहे हैं और उसमें कुछ लाइटिंग वगैरह जल रही है।

और यहाँ दो पिलर ऊ दो ठो ऊपर मीनार बस दिख रहे हैं। बहुत पुरानी जगह है और कुछ ईंट कि दीवारें दिख रही हैं। खंडर टाइप और ये दिन का समय है और आसमान दिखाई दे रहा है। धूप निकली हुई है।